और सकूल के सामने एक खुला ग्राउंड है।

मैंन गेट को अलग-अलग फूलो से अ सजाया गया है।

यह द्रश्य किसी मुस्लिम समाज के स्कूल वे मदर्से का है।

और इस शोरूम के बाहर कुछ साधन खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

मकान के बाहर अनेक बड़े-बड़े पेड़-पोधे उगे हुए है।

मकान के सामने एक खुला ग्राउंड या खेत सा है।

अनेक अलग-अलग प्रकार के फूल-पौधे बो रखे हैं।

गाड़ी खड़ी हुई है और उस गाड़ी में से एक व्यक्ति बाहर आता नजर आ रहा --

और पंखो में अलग डिज़ाइन वे अलग वैरायटी के होते है।

और यह दूकान एक सोडा एवम कॉफ़ी शॉप की है और--

देखते हुए आगे बढ़ रही है।

सूर्य उगता हुआ नजर आ रहा है। और सूर्य की लालिमा--